टहलने के लिए जाना चाहिए सुबहे-सुबहे अच्छा रहता है सेहत के लिए पैर में जब घाँस पड़ती है तो शरीर के लिए अच्छा होता है।

समसान घाट में भी आइसी बना रहता है बनने के लिए तो--

ये रैली निकल रही है ए कोई गुरूजी होंगे या कोई महाराज होंगे।

हिरण-हिरण पूरा खेल रहे हैं पार्क में हिरण है ये तो--

आजकल लड़कियाँ भी प्रतिभा शाली होती है कोई लड़कियों को कमजोर नहीं समझ --

पर वो कभी ना उभार के निकाल नहीं पाते है क्यूंकि न कभी कभी वो दब जाते है की हम लोग कहाँ करेंगे अइसे वैसे--

किसी चीज़ का उ होगा उ प्रतियोगा हो रहा है शायद --

मछली है की मुर्गा है यार--

कौन दिखा रहा होगा दोस्तों इन माईन लोग को --

एकदम मन तृप्त हो जाता है देख के ऐसा लगता है सुकून सुकून देख लिया --

नाई बेचारा अपने दुकान में काम कर रहा है बाल बना रहा है बाल बनवाने के लिए आये है लड़के लोग --

शिक्षिका बैठी है मस्त मुस्कुराते हुए बच्चों को देख रही है बच्चें अच्छे से अपना काम कर रहै है की नहीं कर रहै है।